और जैकेट कुछ एसे पहने हुए है कॉपी लिए हुए हैं |

टेबल पर ब बैठे लोग हुए है टेबुल पर दवाई है और कुछ लोग लिख रहे हुए है।

सूरज के किरणे आया हुआ है उधर है अथि --

कुछ लग रहा है कोचीन है और बगल में लगा हुआ है कोचिंग बंद है।

बहुत बड़ा बिल्डिंग है लग रहा है कोचिंग है गड्यू है।

कुछ उसपे रखा हुआ है अच्छा लग रहा है तारो के पेड़ है बहुत बड़ा घोर है बगल में।

किराना दूकान है कुरकुरे है सेम्पुल है।